और बगल में लाल और सफेद रंग का टेंट है यह टेंट के बगल में एक कुर्सी है यहाँ एक आदमी--

यह लम्बी लाइन मे बहोत सारे औरत और मर्द है थोड़ी दूर पर कुछ बच्चे है और पेड़-पौधे है।

यह पिक्चर एक कपड़ो की दूकान की है यह दुकान में बहोत सारे ट्राउज़र्स और हाफ पेन्ट टंगे हुए है काउंटर में कुछ टी शर्ट्स भी रखी हुई है।